लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने के तरफ बोहोत सारे--

सुन्दर सा मौसम दिखाई दे रहा है।

जिसमे एक ट्रिप दिखाई दे रहा है और एक जीप खड़ी दिखाई दे रही है और एक कार दिखाई दे रहा है।

कुछ हरी कलर की दिखाई दे रही है कुछ येलो कलर की दिखाई दे रही है।

बोहोत सरी हरी-भरी घास दिखाई दे रही हैं।

बोहोत सारे गंजे दिखाई दे रहे है बड़े - बड़े।

और धुप बोहोत सारी धुप दिखाई दे रही और हरे कलर की मेट बिछी हुई दिखाई दे रही है। और नीले कलर का मौसम दिखाई दे रहा है।